और आस पास हरियाली भी दिख रही है।

और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं।

और पोलोथिन में पैक करी हुई है।

कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है।

साइडों में कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ कुछ शीशे भी दिखाई दे रहे।

दिखाई दे रहे हैं और ऊपर--

और एक इंडियन फ्लैग भी ले रखा है पीछे एल_ई_डी स्क्रीन भी है।

जिसमें रेड कलर से नेम लिखा हुआ है और--

यह एक बागीचे का व्यू है जिसमें काफी साड़े--

फर्श पर टाइल्स लगे हुए हैं और साइडों में खंबे नजर आ रहे हैं।

यह एक दीवार है किसी इमारत की।

और एक आदमी बाहर की तरफ खड़ा हुआ हैं।

काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे है जो गेट बंद है।

और कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

जिसमें अलग अलग फ्रेम व रंग के चश्मे रखे हुए हैं इसके--

टेबल रखे हुए हैं। साइड में एक पेड़ भी लगा हुआ है।

लोहे का काफी सारा सामान रखा हुआ है।